छोटे छोटे पत्ते लगे हुए हैं बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं एक पतला रास्ता गया है वहा पे वो--

यह आदमी बैठे हुए हैं बहुत सारे कहीं-कहीं कुर्सियां खाली है कहीं-कहीं आदमी बैठे हैं कुर्सी पर--

साइड में खडे हुए है सामने और सजा हुआ है पीली लाइट दिख रही है व्हाइट लाइट जल रही है और सामने फूल भी लगा हुए है।

ना तार दिख रही है जमीन दिख रही है और--